लोहा पाइप भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

दुकान के अंदर बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

बहुत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कॉर्टून का अंदर में बॉक्स का अंदर में।

मिट्टी में ग्रीन ग्रास भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पे हमें--

इस रूम का अंदर में बहुत सारा ब्लैक कलर का कार दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत सारा व्हाइट कलर का कपड़ा से बना हुआ चेयर नजर आ रहा है बहुत सारा।

तस्वीर पर हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा पेर पौधा भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पे।

डी में ग्रीन ग्रास भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट का अंदर में दो इंसान दिखाई दे रहा है।

सामने मे चेयर भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें--

संकहन में पेपर पड़कर नजर आ रहा है इस तस्वीर पर हमने।

स्ट्रेट लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

इस तस्वीर पे हमें पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है बहुत सारा।

उस तरह हैंड वॉश नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पे हमें सामने में बहुत सारा पेड़ पौधा भी नज़र आ रहा है।

केन में पीस भी जुलीकर भी नजर आ रहा है।

बंबू भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा वायर भी नजर आ रहा है इस पिक्चर हमें।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

इस तस्वीर पे हमें चाइनीज से कुछ लिखकर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर हमे एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान का अंदर में दिखाई दे रहा है।

नमक भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

सामने में ग्रीन कलर का बहुत सारा लोहे का पोल्स भी नजर आ रहा है।

वायर भी नजर आ रहा है इस तस्वीर पे हमें।

रास्ता में स्ट्रेट लाइट दुप भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पे।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है बंबू की नजर आ रहा है इस तस्वीर में बहुत सारा।

हमने में टिशू पेपर भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें--